जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है।

जैसे कि मैं--

देख पा रही हूं यहां पे।

बुके भी रखा हुआ है कुछ फूले ऑरेंज पीले सफेद--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक सुखदेव पैलेस होटल है।

यहां पे कुछ व्यक्ति--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक--

बोर्ड लगाया हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं--

यहां पे कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं यहां--